डॉक्टर आप सब देख सकते अपने अपने कॉस्ट्यूम में खड़े हैं और यहां पे ये एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं देख सकते हैं काफी लगन के साथ अपना काम कर रहें --

और यहां एक फोर व्हीलर खड़ी है देख सकते यहां पे--

शॉप में आप देख सकते हैं कॉट पैंट यहां पे दिखाई दे रहे हैं तो कुर्ते पजामे भी हम लोग देख पा रहे हैं काफी अच्छे ड्रेसस हैं यहां पे।

अध्या पे टेंपल यहां पे लिखा हुआ है ठीक है और काफी अच्छा ये मंदिर है आप खुद यहां पे आके देख सकते हैं बहोत प्यारा बना हुआ है।

एयरोप्लेन जो जिसे कहते हैं और यहां पे आप देख सकते अंकल आंटी खड़े हैं काफी सारे भैया भी यहां पे खड़े हैं हम उनको भी देख पा रहे हैं।

शोरूम में हम देख पा रहें यहां एक फोर व्हीलर है जो काफी बड़ी सारी और बहोत प्यारी है इसका कलर व्हाइट है आस पास दो भैया है।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे एक समुंदर है जो काफी बड़ा सारा है यहां पे कुछ अंकल आंटी खड़े हैं।

झील में आप देख सकते हैं एक नाव हैं नाव के आसपास कुछ लेडीज तो कुछ जेंट्स हैं जो हम यहां पे देख पा रहे हैं आप खुद देख सकते हैं।

ए_टी_एम में आप देख सकते हैं काफी सारी भीड़ है बाहर हम देख पा रहे हैं कुछ कचरा सा पड़ा हुआ है।

पेट्रोल पंप के बाहर हम देख पा रहे हैं काफी सारे बाइक वाले हैं जैसे की कोई दूध बेचने वाला कोई छाछ बेचने वाला।

और यहां पे कुछ केंद्र है बहुत ही अच्छी जगह है ये यहां पे एक बड़ा सारा पेड़ भी है जो हम देख पा रहे है एक स्कूटी भी खड़ी है।